और यह फूलों का दुकान है।

जहां बहोत प्रकार के फूल है।

यहां बच्चे कुछ बना रहे हैं।

यहं एक दुकान हैं जो सब्जियां और फलों की हैं।

यह एक फूलों का बगीचा है।

उपर पंखा है बहोत सारे लकड़ी के सामा--

यहां कुछ बच्चे कतार में खड़े हैं।

यह फोटो कॉपी की मशीन है।

एक सौ नौ नंबर का है यह एक लैब है।

तारें आपस में जुड़ी हुई हैं।